इस पिक्चर में एक नर्सरी दिख रही है इसमें एक व्यक्ति घूम रहा है इस --

कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है छत पर दो कई लोग बैठे हुए हैं दो लोग खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में पार्किंग दिखाई दे रही है साइड में गार्डन दिखाई दे रहा है।

चेयर्स लगी हुई है पीछे लोग चेयर्स पर बैठे हुए भी है और खडे़ हुए भी है कुछ खाना भी लगा हुआ है।

चार चार बच्चों का ग्रुप बना हुआ है जो की टेबल के ऊपर नीले रंग का --

एक आदमी भी बैठा हुआ है रेड कलर का कुछ--

एक टॉवल्स दिख रहे है एक स्विमिंग की रिंग दिख रही है।

यह एक इस पिक्चर में एक शॉप है जिसमें--